ये किसी बच्चो खेलने की पार्क की तस्वीर है जहाँ पर नीचे से पानी गया हुआ है जिसमें कुछ लोग कुछ लोग रबर के टायरों पर बैठ कर तैर रहे हैं।

यह तस्वीर किसी बस स्टैंड की है जहाँ पर बहुत सारी बसे खड़ी हुई है आस-पास बहुत से लोग हैं जा रहे हैं आ रहे हैं।

ये तस्वरी किसी तलाब की ली गई है जिस में बहोत सारा पानी भरा हुआ है जो की स्थित है एक जगह पर रुका हाआ है आस पास कुछ घर है।

ये तस्वीर एक खटारा बस की है जो कि बहोत ज्यादा गंदी हो चुकी है जिसका रंग सफेद और नीला है नीचे काले टायर लगे हुए हैं बहोत से लोग हैं जो कि जा रहे हैं कुछ लोग बस में बैठे हुए हैं।

एक क्रिश्चियन का बोर्ड लगा हुआ है पीछे कुछ नीले कपड़े में बंधा हुआ कुछ रखा हुआ है सबने पीले कपड़े पहन रखे हैं हाथ में जोत ले रखी है काले कलर का पेंट पहन रखा है कुछ लोग --

पास कुछ बच्चे है मैरिज हॉल सजा हुआ है जिसमें पीले और सफेद और लाल गुब्बारों का उपयोग किया गया है नीचे नीली और लाल कारपेट बिछी हुई है ऊपर रंगीनी चमकी से सजावट है।